यह एक बहुत बड़ा नदी है जिसमें बहुत सारा मछली भी मारा हुआ है।

और गेट में बहुत सारे बैलून भी सजाया गया हैं।

इसमें पच्चास परसेंट का सेल है।

और दीवाल में फोटो भी लगाया गया है।

फोट के ऊपर में छत में बॉल भी बर रहे हैं।

जिस पर रखा है चिकन वो काला है।

और एक आदमी बैठा हुआ है और उसके बगल में बहुत सारा आदमी भी है।

यह एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है उसके नीचे कोर्गेट का घर है।

सामने में कुर्सी भी खाली है और सामने में कंप्यूटर कांटा भी है।

यह एक सैलून का दुकान है।

गेट में आमंत्रण लिखा गया है।

और अंदर में आदमी भी दिखाई दे रही है।

इसमें बहुत सारा बैलून भी सया गया है।

और सामने बहुत सारा क्रीम भी रखा हुआ है।

नीचे में बहुत सारा चाक भी खोल के रखा हुआ है।

और एक पक्षी भी खड़ा है एक टांग पे।

इधर घास काटा हुआ है और उधर पानी बहुत कम है।

और अंदर में बहुत सारा बैलूम भी सजाया गया है।

और इसमे एक रिसीपीटोन लिखा हुआ है। जिसके सामने मे दो मूर्ति रखा हुआ है।

और टेम्पू सड़क पे रखा हुआ है।

और बोर्ड के सामने दो लेडिस बैठी हुई है।

और एक नेट रिटर्न लिखा गया है।